यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है इस जंगल के जमीन पर कुछ जानवर घास --

ये इलेक्ट्रिक रिक्शा बहुत ही अच्छा होता है पर्यावरण को साफ रखने में।

ब्लू कलर का पेंट किया गया है और दरवाजे गेट को भी अच्छे तरीके से ब्लू कलर में पेंट किया गया है स्कूल --

यहाँ पर एक दुकान है इस दुकान पर अलग-अलग प्रकार के फल रखे गये हैं।